बिल्डिंग में मुझे एक अ गली कच्ची रास्ता दिखाई दे रहा है उस रस्ते पे बहुत सारे लोग खड़े हुए है एक साइकिल से जा रहा है।

एक दो व्यक्ति बाइक पर बैठे हुए है उम्म --

इस इमेज में मुझे बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें एक पतली रस्ता गई है उस पे से अ-तीन साइकले जाती हुई दिखाई दे रही है एंड सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही।